मुझे दिख रहा है एक हॉल ।

दिखाई दे रहा है एक टॉवर --

इस चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा चर्च--

बहुत सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं।

इस वॉलीबॉल खेल में बीच में एक नेट लगी हुई है।

बहोत सारे बच्चे बेंच और टेबल पर बैठकर--

मुझे दिख रहा है इस चित्र मे--

कुछ मोटर साइकल पर हार चढ़े हुए है।

बहुत सारी टेबल और कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही--

इस छत पर बहुत बड़ा सोलर पैनल बना हुआ है।

इस चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है एक किराना स्टोर --

बनी हुई है यह बिल्डिंग पीले कलर की रंग से रंगी हुई है।

इस शॉप के अंदर रैक्स में बड़ी बड़ी बैटरीज़ --

टेबल चेयर और सोफे लगे हुए हैं।

छोटा गुमट बना हुआ है इस गुमट के पास --

इन ट्रक्स के आसपास बड़े बड़े जैक दिखाई दे रहे हैं।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

बंपर कार्स नाम की शॉप है।

के अंदर बहोत सारा पानी जमा हुआ है।